पत्थर दिख रहे हैं हमें यहाँ पर मिट्टी भी दिख रही है गाये दिख रही है हमे नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

टेबल दिखाई दे रही है बहोत सारी पानी की बॉटल्स दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की है।

हमें यहाँ पर बहोत बड़ा रूम दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर गेट दिखाई दे रहा है दरवाज़ा दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है बल्ब दिखाई दे रहें हैं।

गेट हमें दिख रहा है जो की येल्लो कलर का है हमें यहाँ पर रेड कलर का बोर्ड दिख रहा हैएक कार दिख रही है व्हाइट कलर की दो टायर दि --

रेड कलर का बोर्ड दिख रहा है ज्वेलरी शॉप दिख रही है।

हमें यहाँ पर एक कमरा दिखाई दे रहा है वाइट कलर का बोहोत सारे कांच दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बोटल दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर बोहोत सारे टेबल दिखाई दे रही हैं।

बलून्स दिख रहे हैं जो की रेड कलर के हैं वाइट कलर के हैं हमें यहाँ पर कुर्सियां दिख रही हैं जो रेड कलर की हैं यलो कलर की हैं ब्लू कलर की हैं सॉस की बोटल दिख रही हैं ग्रीन कलर की रेड कलर की दिख रही हैं।

पानी दिख रहा है चेयर्स दिख रही हैं रेड कलर की ल-लोग दिख रहे हैं हमें यहाँ पर पेड़ पौधे हमें दिख रहे हैं।

हमें यहाँ पर ब्लैक कलर की शटल्स दिख रही हैं हमें यहाँ पर गमले दिख रहे हैं।

हमें यहाँ पर जो दिवलो का रंग है वो यल्लो वाइट दिखाई दे रहा है।